जिसमें ट्यूबलाइट जैसे तीन बड़े पट्टे एक साइड में--

तस्वीर एक मिठाई की दुकान की है जिसमें सफेद कलर के एक रैक में कांच के अंदर बहुत-सारी मिठाइयां लड्डू पेड़े --

और कलाकंद जैसी मिठाइयाँ रखी हुई है जब के बगल में एक लाल कलर का काउंटर रखा है और पीछे लकड़ी की बहुत सारी अलमारियों में समान दिख रहा हैं।

जिसमें एक तरफ तीन पुरुष खड़े है जबकि एक तरफ एक महिला और दो पुरुष खड़े है सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं।

पास की दीवाल पे प्लास्टर हुआ है लेकिन कलरीन्ग नहीं की गई है और सामने गिट्टी और रेता पड़ी हुई हैं ।

हरे रंग के नीचे घांस है आधी धूप और आधी छांव उस बकरी के बच्चे के उप्पर पड़ रही है।

बैनर लगे हुए हैं शायद जो दुकानों के एडवर्टाइजमेंट के हैं।

जबकि दूसरी नाव पूरी तरीके से खाली है पाइप या खंभे जैसा उसमें कुछ बंधा हैं।

पास ही एक दीवार के सहारे बहोत बड़ा झाड़ दिख रहा है।